कुछ बड़े बड़े है कुछ छोटे छोटे--

और खिड़कियां हैं गेट ओपन है।

ये छोले भटूरे वाले की दुकान है।

इस पर लिखा है गुरु कृपया छोले भटूरे।

में ए_सी लगी हुई है अंदर लाइट्स ऑन है।

नीले कलर के लोवर और व्हाइट कलर के शूज पहने हुए है इनके पास मे एक लेडिस बैठी हुई है जिसने साड़ी पहनी हुई है।

इन फूलों के पास बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है।

झूला लोहे का बना है।

यहां पर एक काउंटर रखा हुआ है पास में छोटी-छोटी स्लेपो पर सामान रखा हुआ है।

पेड़ पौधे हैं यह ग्राउंड हल्का हल्का घास है इस ग्राउंड में।

कुछ बैनर पर लिखा है बोध दिवस।

यहां पर एक व्यक्ति ठेला लिए खड़ा है।

यहां तीन चेयर है एक बेंच है।

जंगले है यहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ है।

यह वाटर पूल है स्विमिंग पू--

यह एक पैलेस की पिक्चर है यहां पर पर्दों से डेकोरेशन --

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसका नाम न्यू आशा इलेक्ट्रॉनिक्स है।

फैन ऊपर टंगी हुई है।

और पास में एक फ्लोवर --

यहां दो प्लेयर बैडमिंटन खेल रहे हैं।

ग्रीन कलर का मैट बिछी है यहां।

इसका नंबर एच_आर फाइव वन ए_ई पिचासी सैंतालीस है।

रेडी कलर वाले की पीछे की खिड़की भी खुली हुई है।

पास में दो तीन चेयर है बेंच है।

दूसरी तरफ भी ऐसे ही हैं।

जिसमे एक में बोतल बीच में गोल वाले बॉक्स और ऊपर सबसे बड़े वाले बॉक्स और उनसे नीचे भी कुछ डिब्बे रखे हुए हैं।

डिब्बे व्हाईट भी हैं येलो में हैं ग्रीन में हैं।

यहां पर फैन ऑफ है।

यहां नीचे फरश हुआ है।